यह चित्र पानी बहता हुआ दिख रहा है इसमे पूरे मई हरियाली छाई हुई है बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे--

पानी नीचे बह रहा है। इसके नीचे पुरे काले पत्थर दिख रहे है। पूरा हरा-हरा दिख रहा है।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

यह चित्र पत्थरोंकी के दिवार के ऊपर बड़े-बड़े तस्वीरे बनी हुई है मालाये चड़ी हुई है एक कपड़ा भी लटका हुआ है माला भी रखी हुई है और बहुत दिख रहा है बहुत सारे --

इस चित्र मे बहुत सारे --